यह एक कुत्ता पालन का दृश्य दिखाई दे रहा है।

और कुत्ता का कलर सफेद रंग का है और का रंग भूरा कलर का है।

नीला रंग का आकाश दिखाई दे रहा है बहोत सारी बिल्डिंग्स भी दिख रहे हैं।

एक बगीचा का दृश्य दिखाई दे रहा हैं प्लास्टिक फ्लावर्स लगाया हुआ हैं।

जैसे में येलो कलर लड्डू हैं और पेड़ा भी हैं।

साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

यहां पे बहोत सारे व्यक्ति लोग भी हैं।

बहुत सारे बाइक्स भी हैं बिल्डिंग में बहुत सारे लकड़ी से बनाया हुआ है।

शॉप का कलर व्हाइट येलो ग्रीन है।

कूलर भी है और कढ़ाई भी चढ़ाया हुआ है और पकवान भी बिक रहे हैं।

और एक आदमी अंदर खड़ा है जो कि रेड कारपेट में उ खड़ा है।

गेट में शटर लगा हुआ है गेट के पास फ्लावर्स सजाया हुआ है पोस्टर में लिखा हुआ है वेलकम --

यहां पे एक बिल्डिंग का दृश्य दिखाई दे रहा है और यहां पर एक बगीचा भी है।

बिल्डिंग का कलर है येलो और रेड है।

यह एक गोदाम का दृश्य दिखाई दे रहा है।